जो कि पिंक कलर से प्रिंटेड है और यहाँ पे छाता लगे हुए हैं उनके नीचे फलो की दुकान लगी हुई हैं जिसमें सेव रखे --

जो बिल्डिंग है वो रेड कलर और व्हाइट कलर से पुत्ती है जहां पर टीन भी डली हुई है कुछ पेड़-पौधे भी है एक बाइक खड़ी हुई है जो कि ब्लैक और रेड कलर की है यहां पे एक साइकिल का टायर भी नजर आ रहा।

और ऊपर आसमान है आसमान मल्टीकलर का है जैसे की बैंगनी कलर का और ब्लू कलर का एक टावर भी है जो की पेट्रोल पम्प के पीछे है।

यहाँ पर एक सड़क है जिसमें जाम लगा हुआ है और जिसमें फोर व्हीलर है खड़ी हुई है दो फोर व्हीलर है जो कि वाइट कलर की है और एक बाइक है।

यहाँ पर बहुत सारी छोटी-मोटी दुकाने है एक तखट डला हुआ है तखट पे कुछ समान रखा है बहुत सारे पॉप्स सुपारी दुकानों में लटक रहे है।

--के बहार छोटे मोटे पेड़-पौधे लगे है हरे-भरे पेड़-पौधे वनस्पतियां लगी हुई है ऊपर आसमान है आसमान का कलर व्हाइट हैएक खम्भा लगा हुआ है खम्भे के ऊपर एक होर्डिंग लगी है।

ऊपर आसमान है तो नीचे सड़क है। एक एक इंसान ने व्हाइट कलर का कुर्ता पहना है।